विम साबुन है रिन साबुन है डिटॉल है भुजिया है तरह तरह के सामान है।

यहां बहोत बड़ा समुंद्र है उसके ऊपर बहोत बड़ा पुल है पुल के नीचे बहोत सारा आदमी है।

यहाँ एक चर्च है बहुत सुंदर लग रहा है सजावट भी बहुत अच्छा है पिंक कलर से रेड कलर से सब सजावट किया हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है| आदमी सब भी बहुत सारे हैं सब वाइट कलर के कपड़ा पहने हुए हैं जींस शर्ट सब पहने हुए हैं ।